बिल्डिंग में काफी सारे झंडे लगे। नीचे की तरफ में एक रस्ता है।

यहाँ एक बहुत बड़ी सी नदी है नदी के पीछे बहुत बड़ा सा एक मैदान है हरे रंग का।

और पीछे की तरफ में एक बहुत बड़ी सी बॉउंड्री लाइन बनी हुई है।

एक बोर्ड में इंजीनियरिंग ई.सी.इ स्लैश इ.इ.इ. लिखा है।

ये एक नदी है | नदी के अंदर एक बंदा बोट चला रहा है दो लोग हैं। एक ने --

इसमें आवर सर्विसेज होटल लांड्री गेस्ट लांड्री नीचे की तरफ में एक नंबर लिखा है। पीछे की तरफ एक व्हाइट कलर --